ये फोटो बहोत ही सुंदर है ये एक ढाबा है जिसका नाम है शिवम और सामने--

फ्रूट रखे हुए है माता की पूजा के लिए--

और ब अ यहां पर एक कुरकुरे चिप्स रखने वाला एक रैक है डस्टबिन है बाइपर है और झाड़ू पड़ा है।

अह बाकी खुले खुला भी है यहां पर एक--

ज जा रही हैं और एक आदमी इस स्कूटी पर--

और यहां पर लिखा हुआ अमर्जेंसी --

इस फोटो में एक औरत बैठी हुई है। वो अ उसने उम्म ब्लैक कलर का कोट और कलरफुल कैप लगाई हुई है।

और सामने बिल्डिंग दिख रही है काफी बिल्डिंग दिख रही है और इस पार्क में काफी लोग बैठे हुए हैं।

दुकानों के आगे एक आदमी खड़ा है बाइक पर बाइक चला रहा है। एक ऑटो खड़ा है कुछ साइकल का--

गमले लगे हुए हैं गमले में कुछ पौधे लगे हुए हैं।

और इसके ये बंद है लोहे की ग्रिल से आगे--

ये अ मार्केट है मार्केट में ये एक दुकान है उसपर लिखा है विज्ञान बुक सेंटर स्टेशनरी ।

यहां पर बुक्स मिलती है होल सेल --

ये फोटो बहोत सुंदर लग रही है जहां पर अ कुछ जेंस लोग कुछ लेडिस सुंदर सुंदर ड्रेस डाल के--